और कुछ जिम की मशीने दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है और ब्लैक कलर की है।

उपर मुझे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है जिसमे कुछ झंडे दिखाई दे रहे है।

और उसके पीछे बहत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

मै बहोत सारे लड़के लोग दिखाई दे रहे हैं जो कुछ क्रिकेट खेल रहे है और कुछ बैठे हुए हैं और एक बैग दिखाई दे रहा है।

और कुछ राउंड सैप में कुर्सियां दिखाई दे रही है जो मिटटी कलर की है ।

और एक बच्चा का टेबल दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है जो ग्रे कलर --

इस में एक कार दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और एक गाड़ी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

और बहोत सारे आदमी लोग और एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है जो कुछ लाइन लगाए हुए हैं।

यहा पर मुझे बहोत सारे आदमी लोग और कुछ बोहे दिखाई दे रहे है जो कुछ फुल बेच रहे है।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे मिट्टी दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहा है जो कोई आदमी है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

फोटो बना हुआ है और एक आटो दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और येलो कलर का है और एक बाइक --